ये चित्र में बहुत बड़ा पंडाल दिख रहा हैं जिसमे बहुत सारे लोग हैं कुछ महिलाएं हैं कुछ छोटे बच्चे हैं।

और यहाँ पर एक साइड में स्टेज हैं वहाँ पर एक लड़की गाना गा रही है।